और इत्यादि जो भी काम हो आप यहां से ले सकते है अच्छा रेट में आपको अच्छा सामान मिलेगा यहां पे आप आइए घूमिए अच्छा दुकान है बेगुसराय जिला मे ।